यह एक बार्बर शॉप है यहां पे आप बाल कटा सकते हैं आपका यहां पे किसी भी किसी तरह का आप बाल कटा सकते हैं।

आप इस चित्र में एक पार्क देख सकते हैं यह बहुत ही चौड़ी और लंबी है पार्क है इसमें बहुत तरह के फैसेलिटीज भी उपलब्ध है।

और यहां पे अपने कार्य को पूर्ण होने पर आप सभी सनातनों ने अपनी सर को झुका के प्रणाम कर रहे है।

आप इस चित्र में यह देख सकते हैं की यह बहुत ही पुरानी मॉन्यूमेंट्स है यह बिल्डिंग बहुत ही पुरानी दिखाई गई है।

यह एक बहुत ही पुराना ल किला है | आप यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं ।

और इस आवास बिहार में प्रसिद्ध है और यहाँ पे लोग अपनी कोई भी समस्या लेके आ सकते है और यहाँ का बहुत ही अच्छे से समस्याओं का --

यह एक फील्ड है जिसमे बाढ़ आ जाने के कारण यहां सभी पेड़-पौधे फूल पानियों से ढक गए है।

काम अच्छे से--

आप यहाँ पे अपने कार को पार्क कर सकते है और आप अपनी कार को सही ढंग से आप यहाँ पे सुरक्षित भी रख सकते है यहाँ पे सही तरह के फैसिलिटी अच्छी तरह से --

और इसकी बहुत ही ऊची इमारत है और यहाँ पे चारो ओर लाइट भी लगाये गए है जिसकी सुन्दरता ओर भी बढ़ा देती है।